और ओ आसपास बहुत सारे मकान बने हुए हैं।

इसके अलावा बहुत सारा पानी बह रहा है।

ये दुकान है दुकान के बाहर बहोत सारे टायर रखे हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक कमरा है कमरे में एक बेड रखा हुआ है दो तकिया रखी हुई है और ब्लैंकेट रखा हुआ है।

आसपास ब सोफा रखा हुआ है बहुत सारे लाइट है फैन है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक लंबा सा टेबल रखा हुआ है।

इयु ब्लू कलर का घर बना हुआ है जमीन पूरी सफेद है।

ये एक वाइट कलर का केक है केक के ऊपर दिल्स रेड कलर का दिल ह बना हुआ है बड़ा-छोटा।

बहोत सारे होने खड़े हुए हैं।

यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं मंडप लगा हुआ है मंडप का कलर ऑरेंज है और व्हाईट है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग खाड़े हुए हैं एक आदमी बैठा हुआ है और बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारी बस खड़ी हुईं है जोकि --

जमीन दिखाई दे रही है आसपास बहुत सारे पौधे भी हैं।

कबाड़ रखा हुआ है और पूरा म्म टाईल क्रीम कलर का है और ऊपर छत भी क्रीम कलर की --

आसपास ईंट के घर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे दरख्त --

ये सब डॉक्टर दिख रहे हैं और पर्दा लगा हुआ है पर्दे का कलर ब्लू है।

यहाँ पर होंडे खड़े हुए हैं और दुकान के ऊपर का छत --

पत्थर रखा हुआ पत्थर पे से ही चढ़कर एक आदमी ऊपर गया और एक आदमी नीचे खड़े होकर देख रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे लगे हुए हैं।

आज पास बहोत सारे और सूरज दिखाई दे रहा--

लाइट लगे हुए हैं और अलग अलग तरीके से सजा --

घर दिख रहे हैं यहाँ पर आसमान दिख रहा है खुला हुआ और दरख्त का शाया नजर आ रहा है जमीन पर।

इमेज हैं यहां पर रंग बिरंग लाइट दिख रहा है यह रहा है।

वेफर रखे हुए हैं और आसपास बहुत सारे लोग चले हैं आसपास बहुत सारे घर भी मौजूद हैं।